एक गाड़ी डी.जे. के गाड़ी के साइड मे --

ऊपर बोर्ड पे फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट का बोर्ड लगा है।

राइट साइड में बाउंड्री वॉल बनी हुई है।

पास में एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी है।

फल फ्रूट के दुकान के अंदर काले अंगूर हरे अंगूर सेब फल अनार--